बोटियां रक्खी हैं। इसके साइड में कटोरी है कटोरे हैं ग्लास है जग है।

एक पीला अ पिंक है और एक और भूरे रंग का --

काले इसके शीशे हैं। पेड़ों के नीचे कच्ची जमीन पर ये गाडी खड़ी हुई है।